यह एक रेस्टुरेंट का सिन है इसमें लिखा हुआ है आई लव बिहार यहाँ पे चिल्ली सॉस टोमेटो सॉस के लिए भी दिया हुआ है और बहोत सारे चेयर है।

यह एक शॉप है जो की हम्म जय माँ मंगला गौरी प्रबंध नायकिनी समिति का --